जिस में उन्होने एक टोपी पहना है और लोगों ने हाथ में किताब रखा हुआ ---

ता है प्याज टमाटर गाजर लहसुन बहुत ही बढ़ियाँ लग रहा है और यहाँ पे सौ परसेंट शुद्धता की गेरेंटी --

एक शादी उत्सव है यहाँ पर पति-पत्नी दोनों साथ में खड़े हैं।

तथा केले का पेड़ भी लगा हुआ है सामने से ए.सी. भी लगा हुआ है बिल्डिंग का रंग लाल और पीला है जो देखने में अच्छा लग रहा है।

यह एक रेस्टोरंट है जो की बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है।